मछलियाँ पकड़ने वाले समुदाय या व्यक्ति को मछुआरा कहा जाता है।

उन्हें बैंक नहीं जाना पड़ता और इससे बैंक का भी काम आसान हो जाता।

स्वच्छता अभियानों सरकार का सहयोग करना चाहिए ताकि स्वच्छ भारत बन सके।

और ये मम इम्युनिटी को बढ़ता है।